उनके पीछे कुछ गमले रखें है जिसमें हरे रंग के पौधे लगे हैं उनके पीछे दो गेट है एक गेट खुला हुआ है एक गेट बंद है।

एक हॉल है जिसमें कुछ लड़कियां है जो की बैठी हुई है कोई कुछ बना रही है उनके बीच मे एक टीचर है जो की खड़ी है। वह साड़ी पहनी हुई है।

एक लड़का है जो की शर्ट पहना हुआ है उसके नीचे कुछ एक घर है उसके पीछे एक ग्राउंड है जिसमे हरे रंग की घास है कुछ पेड़ पौधे है जो की हरे-भरे है।

उनके अगल-बगल में कुछ औरतें कुछ छोटी लड़कियां कुछ बड़े लड़के खड़े है उनके पीछे कुछ दीवार है दीवार पे कुछ चित्र बने हुए है जो काफी मनमोहक है।

ऐक लड़का है जो की सिल्वर कलर का लोअर पहना है और टीशर्ट पहना है उसके सर में ऐक टोपी है।